फोटो के अंदर मुझे फर्नीचर दिखाई दे रहा है जो की अलमारी--

मुझे बहुत सारा प्लास्टिक बैग भी दिखाई दे रहा है।

जे एक टायर भी दिखाई दे रहा है साइकिल का।

मुझे अजंता डेयरी लिखा हुआ अक्षर दिखाई दे रहा है।

टाइटन लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है।

फोटो के अंदर मुझे दो डॉक्टर एंड एक डॉग दिखाई दे रहा है।

मुझे लॉक्स भी बहोत दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा पूजा का सामान भी नज़र आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

जो बहोत सारा कार्टूंस भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारा ढोलक नजर आ रहा है।

एक बिल्डिंग मैनेजर आ रहा है जो की सिर्फ उसका फ्लोर है।

के सामने पर मुझे ब्लैक ब्राउन वाला कार्टून्स भी नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

मुझे चार चेयर भी दिखाई दे रहा है।

बिस्तर के ऊपर पर मुझे एक ब्लैक कलर वाला सोफा नजर आ रहा है।

जो वाइट कलर वाला स्विच बॉक्स भी नजर आ रहा है।

मुझे बेंच और डेस्क भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहोत सारा फास्टफूड भी दिखाई दे रह है एक समोसा--

इस मॉनेस्ट्री का कलर गोल्डन रेड ब्लैक व्हाइट मिक्स दिखाई दे रहा है।

पीछे में एक ब्लू डिब्बा है।

मुझे हैंडबैग भी नजर आ रहा है।

इस फोटो के अंदर मुझे एक पोस्टर नजर आ रहा है जहां पर नहर लगन पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है।

इनमें मुझे एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे सनसेट भी दिखाई दे रहा है।

स्लाइड में स्टेयर्स भी है रेड कलर वाला।

इस फोटो के अंदर मुझे बहोत सारे इंसान नजर आ रहा है।

मुझे आरती बुक सेंटर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

मुझे एम_एस_के_बी_एन ऑटोमोबाइल्स डील्स इन हुंडई पार्ट्स बैटरीज एक्सट्रा पोस्टर लिख के दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग पर अवि मारिया लिख के रखा है।